यहां पर बहुत सारे झूला झूलने के लिए आए है तारामाची ब्रेकडांस एवं बहुत सारे --

यहाँ पर बहुत ही सारे बैठने की भी जगह है यहाँ पर बहुत से लड़का आकर जिम कर कर यहाँ पर बैठते हैं ।

ग्राउंड है यह ग्राउंड काफी बड़ा है इस ग्राउंड में बहुत से छोटे-छोटे घाँसे है।

यह घर हे यह घर काफी बड़ा है इस घर में बहुत सरे कमरे है एवं खिड़किया है।

यहाँ यह ग्राउंड में बहुत सारे और भी बड़े-बड़े घर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर लड़का-लड़की के ही सामान मिलते हैं यह दुकान में फेसवास एवं क्रीम --

बहुत सारे बच्चे यहां पर कबड्डी खेल रहे हैं ये कबड्डी खेलने के लिए बहुत सारे आदमी आए हुए हैं कबड्डी देख --

यहां पर पूजा करने के लिए आते हैं एगो मन्नत मांगने के लिए आते हें।

यह नदी है यह नदी काफी बड़ा है इस नदी में बहुत सारे पानी है।